--और एक बैनर लगा हुआ है जिस पर पोस्टर लगा हुआ है और जहां पर बहुत सारी--

सामान रखा हुआ है खाने-पीने और जहां पर बहोत सारे पेड़ वगैरा भी लगे हुए हैं यह फसल उग रही है इसमें--

यहाँ पर जय महल है और महल बहुत ही पुराना है और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ वगैरा लगे हुए हैं।

यहाँ पर जो दुकान है कपड़ों की और यहाँ पर बहुत सारे कपड़े वगैरा रखे हुए हैं और यहाँ पर--

यहाँ पर एक जीपुल बना हुआ है जो जंगलों के बीचों- बीच --

यहाँ पर ये एक ये मूर्ति बनी हुई है और ये मुख बना हुआ है जहां पर--

बहुत ही अच्छा लग रहा है नीचे रेड कलर का पोता हुआ है और ऊपर पीले कलर का पोता हुआ है।

पट्टी लगी हुई है इसमें से जो रनिंग करते है और जहाँ पर एक बैनर भी लगा हुआ हैं।

पत्ती आ रही हैं उन्मे छाए बनी हुई हैं उनकी अभी मंदिर--

और ये पार्किंग लोड में रखी हुई है यहाँ पर बहुत सारी लाइट वगैरा भी लगी हुई है और डीपी रखी हुई है।

बहुत सारे फूल उल वगैरह लगे हुए हैं अच्छा खासा डेकोरेशन --

यह एक एचडीएफसी बैंक है और यह बंद खुला हुआ है अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं चार आदमी खड़े हुए हैं एक --

सीढ़ी भी गई हुई है और जे काफी अच्छा लग रहा है देखने में भी --